यह तस्वीर में एक कमरा दिख रहा है।

कमरा बहुत बड़ा दिख रहा है कमरा में बहुत सारा कुर्सी दिख रहा है बहुत सारा टेबल दिख रहा है।

एक फ्रिज दिख रहा है फ्रिज लाल दिख रहा है दीवार पे तस्वीर दिख रहा है तस्वीर भगवान जी का है।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

नीचे का टाइल सफेद दिख रहा है ऊपर बहुत लाइट जल रहा है लाइट का रंग सफेद दिख रहा --

सामने एक बोर्ड लगा है एक पेड़ दिख रहा है पेड़ हरा --

इस तस्वीर में एक लड़का दिख रहा है लड़का फोटो खींच रहा है एक बड़ा दरवाजा दिख रहा है दरवाजे का रंग लाल है।

एक दीवार दिख रहा है दीवार का रंग सफेद दिख रहा है।

पंखा लटका दिख रहा है पंखा का रंग सफेद है।

इस तस्वीर में एक इमारत दिख रहा है।

इस तस्वीर में बड़ा मैदान दिख रहा है बहुत सारा लोग दिख रहा है।

एक लड़की खड़ी दिख रही है आसमान नीला दिख रहा है बहुत सारा सीढ़ी दिख --

कुछ पेड़ पड़ाबड़ा दिख रहाह--

इस तस्वीर में एक इमारत दिख रहा है इमारत बहुत बड़ा दिख रहा है एक सड़क दिख रहा है ।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

पीछे का दीवार सफेद दिख रहा है दीवार पर नीला पोस्टर लगा है ।

सभी कपड़ा टंगा दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक सड़क दिख रहा है एक दरवाजा दिख रहा है।

दरवाजा बोहोत बड़ा दिख रहा है यह तस्वीर में एक इमारत दिख रहा है।

एक गाड़ी लगा दिख रहा है गाड़ी का रंग सफेद दिख रहाह--

बगल में एक गली दिख रहा है।

एक और इमारत दिख रहा है इमारत तीन मंजिला दिख रहा है।